यहां पर यात्री अपनी सावधान मतलब बहुत ही सावधानी से अपना सब अपने सफर में आते और जाते हैं यहां का चौक बहुत ही सुंदर दिख रहा है।

इस स्कूल में बच्चे अपनी शिक्षा को ग्रहण करने के लिए आते हैं तथा बहुत ही सरलता से शिक्षा प्राप्त करते हैं।

यहां पर तरह-तरह की चीजें उचित रेट पर मिलती हैं और यहां की वस्तु --

यह यूको बैंक है। यहाँ पर बैंक बैंक संबंधी --

शायद डिग्री कॉलेज ही है| यहाँ का पार्क बहोत ही खूबसूरत दिख रहा है। यहाँ पर लड़के घूम रहे हैं|